एक बुक स्टोर है जहाँ हर एक प्रकार की बुक्स अवेलेबल है जिनमें से मैथ बुक्स रीजनिंग इंग्लिश इकोनॉमिक्स जियोग्राफी सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स हिस्ट्री और अन्य प्रकार के पुस्तक कलम --

और सामान भी उपलब्ध है और बहुत ही उचित दामों में दिया जाता है।